लाइटिंग की व्य-व्यवस्ता बहुत अच्छी है और सुपोर्टी यहाँ पर हाईफाई होती है इधर पे --

आप देख सकते है यह पर सब नेचर का क्लिक किया गया है और जहां जहां भी आपकी निगाह जाएगी आपको हरे पौधे हरे भरे पेड़-पौधे नजर आएंगे आपको और बिल्डिंग्स नजर आ रही होंगी आपको--

आप देख सकते हैं ये एक यह बहुत ही पुराना मंदिर है इसमें ऊपर जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी बहुत ही विशाल बड़ा मंदिर मनाया गया है जहाँ पर एक अअअ महादेव की मूर्ति ऊपर विराजमान है और बहुत ही बड़े फाटक लगे लकड़ी हुए है के।

मे गेट ही गेट है कम से कम बीस या पच्चीस गेट होंगे।

चारों तरफ बाउंड्री है। काफी सारे एंट्री गेट हैं आप देख सकते हैं गुंबद है।

जो की वृष का नज़ारा देख रही है और लेफ्ट हैन्ड पे आपको घास नज़र आएगी।

साइड लेफ्ट हैण्ड पे बिल्डिंग्स है और आप देख सकते है और लाइटिंग की बहुत बढ़िया वेवस्था कि गई है रोड कि साफ सफाई विषेस तौर पे ध्यान गया है आप देख सकते है काफी अच्छा नज़ारा--

यहाँ से आप को एयरपोर्ट नज़ारा दिख जाएगा जो की यहा से पीक लिया गया है आप को एयरपोर्ट पूरा दिखाई दे रहा हो होगा यहाँ पे--

--और चारो तरफ आप को नेचर नजर आ रहा होगा | हरे-भरे पेड़-पोधो नजर आ रहे होंगे बोहोत अट्रक्टिवे लुक है।

बहुत ही पुराना किला है ककाइया की ईटं का बना हुआ है यह सब और महात्मा बुद्ध की आपको एक मूर्ति नज़र आएगी इस--

चौक पे लाइटिंग की सुविधा अच्छी है और जो ये ठेला जा रहा है उसपे आप देख सकते है दो स्पीकर रखे हुए है ।

आप देख सकते है ये एक गंगा जी का पिक है जहां पर सभी लोग जा रहे है नहाने के लिए गाँव के सभी लोग।

देख सकते है आप ये एयरपोर्ट का पिक है। जहाँ पर लिखा हुआ है प्रस्थान नबर एक एट्री गेट वन एट्री गेट टू काफी सारे गेट है और आप देख सकते है सिक्युरिटी काफी तगड़ी सिक्युरिटी है यहाँ --

आप देख सकते है ये खेत बोहोत ही खुबसूरत खेत है आप देख लीजिये पास में एक आपको खजूर नारियल का एक पेड़ नज़र आएगा और आप देख सकते है आपको सरसों के खेत नज़र आएंगे जो की ये येलो कलर के फूल होते है।

आप देख सकते है बहुत पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पर कुछ लोग रहते भी है।